और कंपनी में काम होता है जो कि वर्कर लोगों की जरूरत पड़ती है और उन्हें तनख्वा भी दी जाती है। कंपनी में काफी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनती है।

और जो ये डस्टबिन बनायी गयी है कचरा डालने के लिए डस्टबिन बनायी गयी है। और ये जो कुर्सियां दिखाई दे रही है जो बैठ जो सीट दिखायी दे रही है। हमारे बैठने के लिए बनायी गयी है। काफी अच्छा सा अच्छा किया --

और ग्रिल भी लगी हुई है काफी सुंदर मकान रहने के लिए काफी किसी अफसर ने बनवाया होगा दिख रहा है हमें। काफी बड़ा और काफी सुंदर भी साफ-सफाई भी घर में दिखाई दे रही है हमें।

और उम्म उम्म जो कि इस पे नॉनवेज नहीं बनता है और वेज ही बनता है और नहीं वेज प्लस नॉनवेज रेस्टोरेंट है जो कि --